दिखाई दे रही हैं और ऊपर तीन पुतले खड़े हुए हैं।

बाघ गुफा और एक आदमी वहाँ पे --

इस तस्वीर में एक छत की तस्वीर दिखाई दे रही है |--

और भी कुछ डिजाइन वहाँ पे --

वहां पे काफी ढेर सारे कीड़े रखे हुए--

दिखाई दे रहे हैं और वो पॉलिथीन में है।

नट पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ छोटे नट भी हैं कुछ बड़े नट हैं।